यह फोटो में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लाल कलर का भवन दिखाई दे रहा है।

और बगल-बगल किनारे-किनारे घने-घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। छोटे-छोटे भी भवन नजर आ रहे हैं।

बाउंड्री के उपर लोहे लग रखे हैं तथा बाहर की और एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसके अंदर छोटे-छोटे घांसे छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।